राजकीय बेहतर तकनीकी जिज्जर है और ये ये की पाइप दिखाई दे रहा है लौ का--

का गेट है अंदर भी दिखाई दे रहे हैं।

फोटो दिखाई दे रही जिसमें फल फ्रूट भी रखे हुए नारियल केला अंगूर--

फूलो का गेट दिखाइ दे रहा है। पीछे वैसे लकडी का गेट भी दिखाई दे रहा है।

बाहर शीशा का गेट है जिसमें डेकोरेशन हो चल रही है तिरंगा कुछ--

इसमें देख सकते हो मछलियां बनी हुई है और येलो सा कंटेनर्स है उसमें मछलियां पड़ी हुई है।

और एक आदमी स्वयं मछलियों को साइड अलग-अलग कर रहा है। ऑरेंज और ब्लैक कलर का है।

देख सकते है जिगरी टैटूज जिगरी टैटूज जी मेल डॉट कॉम का दिखाई दे रहा है। जिसमें--

अलमारी में और लो की अलमारी भी है वैसी लकड़ी की अलमारी भी है।

देख सकते हैं ये किसी चीज की फैक्ट्री दिखाई दे रही है जिसमें व्हाइट और ये--

डी_एच लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल की फोटो है ये।